ये एक कैफ़े है जो की अभी नया कैफ़े खुला है इसलिए ये पूरा डेकोरेट है अभी

ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ का फ़ूड बहोत ही टेस्टी होता है एंड कॉफ़ी भी यहाँ का बहोत अच्छा होता है।